बराबर में ऊंचे ऊंचे पहाड़ है और पहाड़ के पीछे पेड़ है।

यह एक डॉक्टर की मशीन है ये दो मशीन है।

एक इंसान की हल्की सी सिर दिख रही है। एक इंसान सामने खडा है। वो फोटो खेंच रहा --

बोरिया और व्हाइट कलर की बोरिया रखी है नीचे मिट्टी है अंधेरा हो रहा है।

ऊपर रेड कलर का पेंट हो रहा है नीचे ऑरेंज कलर की चमच्चे--

भारतीय स्टेट बैंक है ये एक बैंक है।

एक बच्चों का स्कूल है यहां पर बच्चे पढ़ाए जा रहा है।

ये एक बुक की दुकान है इसमें आगे विन की पैनल का डब्बा रखा है।

और लाइट भी काफी है ब्लैक कलर हो रहा है।

यह एक घर पर बोर्ड लग तक लग रहा है।

यहां पर तीन विकेट है एक लड़का के हाथ में बैट है वाइट कलर की उसने ड्रेस पहनी है।

ये एक ट्रक है उसमें से कुछ सामान उतार रहे हैं।

और ऊपर एक कंडा है यह ज्यादा जोर लगा रखी है।

और यहां पर तीन आदमी बैठे हैं अंदर गुदाम में भी काफी सारे बेडे गद्दे रखें हैं।

बराबर में वेस्ट समान पड़ा है और नीचे प्लास्टर लोग।